दोस्तों सी ड़ीप आइ आइ टी बॉम्बे की तरफ़ से मैं इस ट्युटोरियल में आप का स्वागत करती हूँ
यह ट्युटोरियल कॅमस्टूड़ियो की अभ्यास करने में आप की मदद करगी
जब वर्णन के साथ ऐनिमेशन का प्रदर्शन होता है तब अभ्यास ज़्यादा गुणकारक होता है
ओड़ियो विड़ियो डॅमोंस्ट्रेशन से आप किसी भी आकृती को सरलता से समझा सकते हो
कॅमस्टूड़ियो एक स्क्रिन रेकॉर्डिंग सॉफ़्टवॅयर है जो आप के कमप्युटर के परदे पर होने वाली सभी क्रियाशीलताओं को रेकॉर्ड़ करती है और उन्हें प्लेबॅक करती है
यानी कॅमस्टूड़ियो की सहायता से आप - कोई भी नई सॉफ़्टवॅयर की आकृती का वर्णन कर सकते हो पाठशाला अथ्वा विध्यापीठ के लिए ओड़ियो विड़ियो ट्युटोरियल बना सकते हो उपयोगकरता शिक्षा के लिए विड़ियो मुविज़ बना सकते हो किसी क्रियाशीलता को दर्शा सकते हो ए वी आइ फ़ाइलस का फ़्लाश फ़ाइलस में परिवरतन कर सकते हो या ऐसे बहुत से कार्य कर सकते हो इस अल्प ग्यात सॉफ़्टवॅयर का प्रयोग अंगिनत है
कॅमस्टूड़ियो माइक्रोसॉफ़्ट विंड़ोज़ 95 98 एम ई एन टी 4 2000 या एक्स पी पाठांथर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है
आप को सिर्फ़ एक चार सौ मेगाहर्ड़ज़ प्रोसेसर चौंसट एम बी रॅम और संस्थपना के लिए चार एम बी हार्ड़ ड़िस्क स्थान की ज़रुरत है
कॅमस्टूड़ियो एक सार्वजनिक स्रोथ सॉफ़्टवॅयर है और इसे इंटरनेट से बिलकुल मुफ़्त में ड़ाउनलोड़ किया जा सकता है
ड़बल्यु ड़बल्यु ड़बल्यु ड़ॉट कॅमस्टूड़ियो ड़ॉट ओ आर जी साइट पर जाएं
यह आप को कॅमस्टूड़ियो की वॅब साइट में ले जाएगी
निचे की तरफ़ स्क्रोल करें और ड़ाउनलोड़ की लड़ी पर क्लिक करें
इसके भीतर दिए गए सारे उपदेशों का पालन करें और आप सफ़लता से कॅमस्टूड़ियो ड़ाउनलोड़ कर पाएंगे
संस्थपना करने के बाद आप कॅमस्टूड़ियो की आइकौन पर क्लिक करें
यह कॅमस्टूड़ियो की संवाद बक्सा खोल देगा
यहाँ इस खिड़की के उपर की तरफ़ मेन मॅन्यु दिखाई देगी
फ़ाइल चुनाव के नीचे आप को रेकॉर्ड़ पॉज़ स्टोप और एग्ज़िट की उप चुनाव दिखाई देगी
इसके अनुकुल बटन्ज़ संवाद बक्से में भी मौजुद है - लाल बटन रेकॉर्ड़ के लिए भूरा बटन पॉज़ के लिए और नीला बटन स्टोप के लिए
रेकॉर्ड़ करने से पहले आप को कमप्युटर परदे पर कॅप्चर रिजन का निश्चय करना चाहिए
मेन मॅन्यु में रिजन चुनाव के निचे आप को तीन कॅप्चर चुनाव दिखाई देगी
यदी आप रिजन का चुनाव करते हो और रेकॉर्ड़ बटन पर क्लिक करते हो तो आप एक चौकोन हिस्से को अपने कमप्युटर परदे पर रेखांकित कर सकते हो जिसके भीतर रेकॉर्ड़ींग होगी
यदी आप फ़िक्सड़ रिजन का चुनाव करते हो तो आप कमप्युटर परदे पर रेकॉर्ड़िंग की जगह का पिकसॅल्स में निश्चय कर सकते हो
अगर आप फ़ुल स्क्रिन का चुनाव करें तो रेकॉर्ड़ करते वक्त पुरा परदा रेकॉर्ड़ किया जाएगा
एनएबल ऑटोपॅन आकृती कॅमस्टूड़ियो की एक खास आकृती है
इसे चुनने से करसर के पीछे कॅप्चर रिजन चलती जाएगी
इस कारण से परदे पर जहाँ सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होगी रेकॉर्ड़िंग वहीं पर होगी
आप यहाँ पर पॅनींग की शीग्रता को भी स्थापीत कर सकते हो
ऑप्शनस के नीचे विड़ियो ऑप्शनस है जहाँ आप को एक कम्प्रेसर चुनना है ताकि आप की विड़ियो फ़ाइल की आकर कम से कम रहें
व्यक्तिक्रम रुप से कम्प्रेसर माइक्रोसॉफ़्ट विड़ियो वन है लेकिन आप इस ड़्रोप ड़ाउन बक्से से कोई भी कम्प्रेसर या कोड़ेक का चुनाव कर सकते हो
इसके अलावा अपने ज़रुरत के हिसाब से आप इंटरनेट से भी कोड़ेकस को ड़ाउनलोड़ कर सकते हो
विड़ियो ऑप्शनस के द्वारा फ़ाइल आकर गुण और माप दांचे को स्थापीत करके आप अपने विड़ियो रेकॉर्ड़िंग का पक्ष उत्तम बना सकते हो
फ़ाइल आकर गुण और माप दांचे के अंखों को स्थापीत करने के लिए आप को पहले ऑटो ऐड़्जस्ट बक्से से चुनाव हटाना होगा
अब आप अपने ज़रुरत के हिसाब से अंकों को स्थापीत करें
इस ट्युटोरियल को रेकॉर्ड़ करने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ़्ट विड़ियो वन कम्प्रेसर का चुनाव किया और की फ़्रेम्स को पाँच कॅप्चर फ़्रेम्स को दो सौ और प्लेबॅक रेट को पाँच के अंक दियें हैं
मैंने क्वोलिटि को पचास पर रख दिया
बहुत सारे अदल बदल और प्रयत्नों के बाद मैं इन अंकों पर पहुंची हूँ जिस से मेरी विड़ियो फ़ाइल की आकार और गुण उत्तम रहे
करसर ऑप्शनस के द्वारा आप अपने रेकॉर्ड़िंग की तरफ़ दर्शकों का ध्यान आकरशीत कर सकते हो
ऑप्शनस के नीचे करसर ऑप्शनस को चुने
इस ड़ायालोग बक्से में आप करसर को दिखा अथ्वा चिपा सकते हो
व्यक्तिक्रम रुप से करसर दिखाई देती है
अब आप तीन प्रकार के करसर का चुनाव कर सकते हो - ऐक्चुअल करसर अथ्वा कस्टम करसर - आप इस ड़्रोप ड़ाउन बक्से में से कोई भी करसर का चुनाव कर सकते हो अथ्वा आप अपने कमप्युटर पे मौजुद करसरस फ़ोलड़र से भी करसर का चुनाव कर सकते हो
अगला इस बक्से को चुनकर आप अपने करसर को हायलाइट कर सकते हो
यहाँ पर आप हायलाइट का आकार आकृति और रंग का चुनाव कर सकते हो
ओ के पर क्लिक करें
आप को इस वक्त करसर में कोई भी बदलाव दिखाई नहीं देगी पर रेकॉर्ड़ की गई विड़ियो में एक कसटम हायलाइटड़ करसर दिखाई देगी
मैं आप को एक छोटा सा नमुना दिखाती हूँ
व्यक्तिक्रम रुप से कॅमस्टूड़ियो आवाज़ रेकॉर्ड़ नहीं करती
लेकिन इस ऑप्शन को चुनकर आप माइक्रोफ़ोन की मदद से आवाज़ को रेकॉर्ड़ कर सकते हो
आवाज़ रेकॉर्ड़ करने के लिए आप के कमप्युटर में साऊंड़ कार्ड़ और माइक्रोफ़ोन का होना ज़रुरी है
इस ऑप्शन को चुनकर आप अपने कमप्युटर पर कनेक्ट किए गए स्पीकरस से भी आवाज़ रेकॉर्ड़ कर सकते हो
अन्य ऑप्शनस में प्रोगॅम ऑप्शनस हैं जिन्में यह उप चुनाव हैं
इन उप चुनावों को चुनने से कॅमस्टूड़ियो की आचरण पर असर पड़ता है
मिनिमाइज़ प्रोगॅम ओन स्टार्ट रेकॉर्ड़िंग को आदर्षस्वरुप चुने
इस से कॅमस्टूड़ियो लगु रुप में सिस्टम ट्रे पर दिखाई देगी
सिस्टम ट्रे आपके कमप्युटर परदे के दाहिनी ओर नीचे की तरफ़ होती है
इस वक्त आप दो कॅमस्टूड़ियो के लगु आकार देख रहे होंगे
वह इस लिए कि इस ट्युटोरियल को रेकॉर्ड़ करने के लिए मैं खुद कॅमस्टूड़ियो का इस्तमाल किया है
रेकॉर्ड़ टू फ़्लाश ऑप्शन में यह उप चुनाव हैं
की बोर्ड़ शोर्टकट्स में आप रेकॉर्ड़ पॉज़ स्टोप आदि के हॉट कीज़ को स्थापित कर सकते हो
आप सुविधाजनक इनका चुनाव करें
मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप को कॅमस्टूड़ियो इस्तमाल करने के लिए परियाप्त विधियाँ बताईं है
कॅमस्टूड़ियो से आप खुद के ऑडियो विडियो ट्युटोरियलस और ऑन लाइन दृष्टी सम्बंघी मापदंड़ बना सकते हैं
कॅमस्टूड़ियो की बुनियादी अभ्यास के बाद आप शायद उसके विशेष आकृतियों को जानना चाहेंगे
इसके लिए आप हमारा अगला ट्युटोरियलस ज़रुर देखें
तब तक के लिए मैं हूँ नॅन्सी सी ड़ीप आइ आइ टी बॉम्बे से
अवलोकन करने के लिए धन्यवाद